उम्म निष्क्रिय कुछ होगा उसका फैक्ट्री टाइप का लग रहा है छोटा सा।

टायर रखे हुए हैं और कुछ केले यहां पर रखे हुए हैं एक वेटिंग मशीन है और कुछ-कुछ यहां पर ट्रे रखा हुआ है शायद फल का ये ट्रे होगा।